यहां पर बहुत बड़े-बड़े पत्थर है--

यहाँ पर पत्थरों से ही पूरें उसको डिज़ाइन दी गयी हैं।

एक यहाँ पर जेंट्स भी दिखायी दे रहा हैं जिसने वाइट कलर का पेंट और ब्लैक ।

वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हैं उसके बाजू में एक पीले।

यहां एक लड़का है ये जिम में है यहां पर ये--

एक आईना भी है बहोत बड़ा वहां पर कलर कलर के चश्मे दिखाई दे रहे हैं।

इसके ऊपर तीन लिक्विड की बॉटल छोटी बड़ी रखी गई है।

उसने एक खरगोश को पकड़ा हैं उसके पीछे एक चेयर हैं वहाँ पर।

तीसरे दुकान का नाम परमात्मा एक ट्रेक्टर गेरेज माडगी हैं।

यहाँ पर एक प्लेट हैं उसके ऊपर चिकन बिरयानी रखी हुई हैं।

सबके इसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड एक एक बोक ब्लॉक में इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाए हुए हैं।